नर्सरी में प्लांटेशन बहोत अच्छे से किए हैं।

डिजाइन्ड उसका जो बिलिंग होता है वो लास्ट में होता है तो आप अपने मनपसंद की चीजें खरीद सकते हो।

यहां पे नदी बह रही है।